नदी के बगल में काफी सारे पत्थर है।

दो आदमी पैदल चल रहा है।

और स्कूल के अंदर मे दो क्लासेस भी लगा होए --

और कांटा भी लगा हुआ है नापने के लिए।

स्कूल के आगे में बहोत बड़ा पेड़ है।

हेयर वॉश करने के लिए दो सीटा भी सीट्स भी रखी हुई है।

इस मंदिर के ऊपर में गोपुरम जैसा चित्र है।

बरांडा स्टील का बना हुआ है।

उस घर में घर के बाहर में एक पेड़ है।